और यहां पे बहोत सारे बैग लटके हुए हैं रेड कलर की।

और पीछे बॉउंड्री दिया हुआ है पेड़ पौधे है किन किनरे किनर किर किरनाड़ी है।

इधर दो लड़का लड़की बैठे हुए है डी_जे डी_जे लगा हुआ है लाइट लगा हुआ है यहां पीने के लिए फेंटा माजा कोको कोला --

दीवाल सब है शीशे की यहां पे कुछ चिपका हुआ कुछ एक पोस्टर चिपका हुआ है एक अह एक लड़की--

और खंभा भी है फूल से सजा हुआ है।